फोटो है। फोटो में कई सारे पेड़ दिख रहे हैं।

लोग आ रहा हैं जा रहे हैं। रेलिंग लगी हुई है। ना --